पार्किंग सुविधा और पार्क की बहुत ही अच्छी सीनरी दिखाई गई है।

चीजे बॉक्स में भरकर रखी गई है बहोत ही सुंदर दिख रहा है।

और यहां पर लोग टेबल पर बैठकर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।

जगह पर बैठे हुए डॉग दिखाए गए है अलग अलग पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे है।

यहां पर सभी चीजे अपनी अपनी जगह पर बहोत ही अच्छे से सजाई हुई है।

काम करते हुए नजर आ रहा है।

कॉलिन हाउस दिखाया गया है।

बहोत ही सुंदर जगह दिखाई गई है।

और साफ सफाई का भी--

सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी हुई नजर आ रही है।

हॉल दिखाया गया है इसमें हाल की साफ सफाई बहोत अच्छी--

यह एक फिट फाइव फिटनेस का--